ये स्कूल की एक बालकनी दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे रूम बने हुए दिखाई दे रहे दे रहे हैं।

झील के अंदर कुछ बगुले दिखाई दे रहे हैं।

जिस पे एक बोर्ड पर नफीस जहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके अलावा उधर की तरफ में कुछ इमारत बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक गवर्नमेंट स्कूल का फोटो दिखाई दे रहा है।

कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ब्लू एंड व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है।

इसके अलावा एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है।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

ये घर के बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है जहां पर एक कुलर रखा हुआ दिखाई दे रा --

इसके अलावा बहुत सारे पेंट के डब्बे रखे हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं बाल्टी बकेट्स ।

और बड़ी बड़ी मशीने पीछे लगी हुई दिख दिखाई दे रही है जिनका कलर अलग अलग है।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

सामने एक ट्रेनर दिखाई दे रहा है जो कि बच्चों को ट्रेन करता हुआ दिखाई दे रहा है।